जंगली ही जंगल है पानी बहोत तेज गिर रहा है आसमान पूरा पानी से लदा लदा है पूरा पानी भरा हुआ है देखो कि लोग के आजू बाजू--

देख सकते हो कि ये एक क्लीनिक है क्लीनिक के आजू बाजू देखोगे कि मशीने रखी है दांतों वाली--

एक होटल है वो जहां झूमर लगे हुए है दो तीन तो। देखोकी आजू बाजू सजावट हुई है ललंटॉप । आजू बाजू देखो की लोग है जो खरे है प्रोफेशन के लिए।

चल लैपटॉप लगा हुआ कंप्यूटर लगा हुआ है सी_पी_यू लगा हुआ है देख सकते हैं बहुत अच्छी दुकान है सामने एक ठो स्प्राइट की बॉटल भी लगी और--

जिम है जिसमें एक व्यक्ति है जो वर्कआउट कर रहा है और देखो कि फोर वजन उठा रहा हुआ है।

एक वाइट कलर की सैंडो पहना हुआ है देखो की बहुत वजन उठा रहा है औ देखो बहोत व वजन लगता है मेहनत कर--

देख सकते हो कि ये एक गार्डन है मेला लगा हुआ है जहां झूले लगे हुए हैं बहोत से बच्चों के झूले लगे हुए हैं आजू बाजू देखो कि एक टावर लगा--

गमले बहोत सारे और स्कूल की एक मैदान में देखोगे की जहाँ एक है जहां बच्चों के खेलने की।

यह सब्जी मार्केट है सब्जी मिल रही है और कुछ लोग सब्जी खरीद भी रहे हैं देव की धनिया है और कुछ लोग हैं बाइक आइक में खड़े हुए हैं।

देख सकते एक घर है जो मकान बन रहा हुआ है आजू बाजू देखो कि बहुत सी रेत वेत लगी हुई है।

आज की गाड़ियों के गाड़ी के टायर लगे हुए हैं बड़े बड़े ट्रकों के मिलते हैं आप देखोगे कि एक बंदा है जो बाहर बैठा हुआ है कुर्सी में।

सफेद वाले फूल लगे हुए हैं देखो की एंट्री में क्योंकि पर्दा लगा हुआ है माले से एक ट्रेवल की एजेंसी --

देख सकते हैं कि मकान है ये बीच रोड में जहां देखो कि एक मकान व्हाईट कलर का आजू बाजू देखो की घर बन रहा हैं जहां देखो की बहुत सारे पेड़ लगे हुए है इसके ऊपर आजू बा --

और डीजे अपरेट कर रहा है और लाइटिंग लगी है रेस ला रही है देखो आजू बाजू पेड़ लगे हुए हैं देखो कई डेकोरेशन हो रहा बस।

भी एक काउंटर बना हुआ है जहां देखो कि बना है अस्पताल है जहां देखो कि तीन का ये शीट लगी हुईं और देखो की--

वो है जी छुट्टी डालने वाली यहां देखो लिखा हुआ है छुट्टी डालने का समय।